याहा पर हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और इसकी दिवार पर कुछ टाईल्स जेसे लगे हुए है येल्लो कलर के --

साइड में कुछ आलू जैसे भरे दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति खडा है।

इन्हां पर हमे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो कि एक पुराने जमाने का बड़ा सी अम ये हवेली टाइप की होती है किला कह सकते है इसको --

और छत पर जो मिस्त्री बैठा हुआ है वो गिट्टी--

दिख रहे है खिड़कियाँ दिखाई दे रही है।

गेट के उपर लोहे की बड़ा सा जाली से बना हुआ है ब्लैक कलर की जाली है।